देखिए यहां पे बहुत सारे व्यक्ति है जो कि जिम कर रहे है।

लोहे के मदद से जो जाली बनाए हुए वो ब्लैक कलर का है।

यह एक कपड़ा दुकान के अंदर का दृश्य है जो कि यहां पे बहुत सारे कपड़े कलर रंग बिरंगे कपड़ों के कलर के मिलते हैं।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति भी है जो कि जा रहे हैं कुछ खड़े हैं।

और एक व्यक्ति और है जो कि ब्लू कलर का शर्ट और ब्लू कलर का पेंट पहना है।

यह एक रेस्टोरेंट या होटल के अंदर का दृश्य है जो कि यहां पर बहुत सारे लाइट पर लगे हैं जो की वाइट कलर का है।

सिर के बाल का कलर ब्लैक है और ऊपर साइड तिरपाल है जो कि ब्लू एंड ग्रे कलर का है।

जो की पानी कलर व्हाइट है और पहाड़ कलर ब्लैक है।

यह एक व्यक्ति का दृश्य है जो कि व्यक्ति के शर्ट का कलर है ब्लू व्हाइट एंड ग्रे --